यहां पर एक लाल रंग की अं छप्पर भी नजर आ रही है नीचे मोटरसाइकिल और गाड़ियां खड़ी है।

यहां पर बहोत सारे फल और फूल दिखाई दे रहे हैं साथ में लुटिया रखी है।

गेट पर भारतीय झंडे की फोटो दिखाई दे रही है साथ में फोटोस्टेट वाले की दुकान है।

और साथ में अकाउंट रजिस्टर नीले रंग का भी नजर आ रहा है।

मंदिर के सामने की दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारे श्रद्धालुओं ने भीड़ जमा कर रखी है।

यहां पर एक आदमी गुलाबी चेक की शर्ट पहने यहां पर मोबाइल चलाता हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर साथ में अ काले रंग की गाड़ी नजर आ रही है।

और सफेद रंग की खिड़कियां बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं वह एक पेड़ भी नजर आ रहा है।

यहां पर बहुत सारे व्यक्ति अंदर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर एक स्कूल की दिखाई दे रही है जहां पर चार लड़कियों ने मिलकर एक ड्राइंग को बनाया है यह--

यहां पर बहोत सारी लडीयां भी जल रही है।

वे यह टैक्स कंपनी की दिखाई दे रही है।

मंडी डेवलपमेंट ब्लॉक की नजर आ रही है यहां पर एक लड़का सीधा सीधा जा रहा है।

यहां पर बहोत सारे हरे भरे पेड़ है मूर्ति है।

एक आदमी में नीला मास्क लगा रखा है।

यह तस्वीर ग्रेट व्हाईट फ़ियाना की दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर शीशा भी नज़र आ रहा है।